के आगे रंगीन पत्थर दिख रहै है और इनके उपर एक ईमारत जैसी बनी हुई नज़र आ रही है।

जिसने मास्क लगा रखा है उसके हाथ मे और एक मशीन है जिसके सहारे से वो कटिंग बना रहा है।

उसके आसपास पेड़- पौधे लगे हुए नज़र आ रहै है और एक साफ़ आसमान दिखाई दे रहा हैं।

इस इमेज मे एक पेड़ नज़र आ रहा है उसके पीछे एक मस्ज़िद दिखाई दे रही है।

--और मस्जिद के बहार एक काले कलर की साइकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही है और कुछ बैठने की जगह नज़र आ रही है।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

और तीन शीशे लगे हुए नज़र आ रहे है जिनके पास मे ड्रॉज दिखाई दे रही है।

और इस पर कलर के धब्बे लगे दिखाई दे रहे है सामने की और कुछ खुला गेट दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में कुछ कपड़ों के थान अलमारी में रखे हुए दिखाई दे रहे है।

कुछ व्यक कुछ व्यक्ति इस झूले में चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।